इस कॉलेज में पाँच हजार स्टूडेंट पढ़ता है इस कॉलेज का बिल्डिंग बहुत ही सुंदर है इसका कैंपस बहुत अच्छे से सजाया गया है यहाँ पे ढ़ेर सारे बिल्डिंग्स हैं।

ये हमारे इलाके का एक टूरिस्ट स्पॉट है ये टूरिस्ट स्पॉट बोहोत ही खुबसूरत है यहाँ पर लोग दूर-दूर से --

ए हमारे इलाका का एक पार्क है। ए पार्क बहुत ही बड़ा है।

चार लोग ए दुकान संभालता हे ।

ए हमारे इलाका का एक फ़ास्ट फ़ूड का दुकान है। ये दुकान ज्यादा बड़ा नहीं है। ए सरक के किनारे पे ए दुकान है।

ए हमारे इलाका का एक मेला है। ए मेला बहुत ही बड़ा है। इस मेले में ढेर सारे बड़ों के लिए और बच्चों के लिए राइड हैं। इहाँ पर ढेर सारे फ़ूड सेंटर भी है।

ये हमारे इलाके का एक मैरेज हॉल है ये मैरेज हॉल बहोत ही बड़ा है।

एलाका का लोग मोबाइल फ़ोन का सर्विस के लिए और न्यू मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए इस दुकान में आते हैं।

जो एक साथ मछली पकड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर मछली पकड़ने का एक यूनियन भी है।

ये हमारा इलाके का एक कैफ़े है ये कैफ़े बहुत ही बड़ा है इस कैफ़े का अन्दर का डेकोरेशन बहुत ही सुन्दर है।